दिए गए चित्र में हमें कुछ सीरिया नजर आ रहे हैं।

हमें बिल्डिंग के सामने एक फ्लैग दिख रहा है।

ऊपर दिए गए छवि में हमें कुछ मशीन दिखाई दे रही हैं।

हमें पिलर्स नजर आ रहा है।

घर के सामने गेट दिखाई दे रहा है।

यह चित्र में हमें मैदान दिखाई दे रहा है।

हमें वाल दिख रहा है जिसका रंग हरा है।

दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा है आदमी का मुँह ब्लर किया हुआ है।

बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में हमें कुछ शटर दिखाई दे रहे हैं।

हमे बहोत सारे पेड़ पौधे और घास नजर आ रहा है।

गेट का रंग काला और गोल्डन रंग का है।

हमें घास फूस और पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

हमें एक टी_वी वाल में नजर आ रहा है।

बिल्डिंग में हमें कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।

टब में हमें पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक डेस्क के ऊपर हमें एक बोतल दिख रहा है।

मे वाल दिख रहा है जिसका रंग सफ़ेद है।

द्वार में हमें दरवाजा दिख रहा है।

ऊपर दिए गए छवि में हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है।

आईना दिखाई दे रहा है।

उपर दिये गए छवि मे हमे कुछ क्रॉस दिखाई दे रहे है।

दिए गए पिक्चर में हमें एक रस्ता दिखाई दे रहा है।